पर उसे बना हुआ ढलान है जो की उस पानी को ऊपर की ओर आने से रोकता हुआ है।

यह पालकी किसी भगवान की है जो की बहुत ही श्रद्धा और धूम-धाम से इसको--

जो की देखने में तो हमे एक रेल यात्री की सफर लग रही है यहाँ पर एक आदमी एक सड़क पर--

तो जैसा की हम यह फोटो में देख सकते है की हमे यह नजर आ रहा है की यह एक बहोत ही बड़ा सा पहाड़ है।

तो जैसा की हम यह फोटो में देख पा रहे है तो दोस्तों हमे यह फोटो में यह दिखाई दे रहा हैकी यहाँ पर--

तो जैसा की हम इस फोटो में देख पा रहे है हमे यह दिखाई दे रहा है की यहाँ पर एक बड़ा सा जगह है जहाँ पर--

और इसने अपने बाल बहुत ही अद्भुत और अलग तरीके से कटवाए है और ये देखने में बोहोत ही ज्यादा अलग दिखाई दे रहा हैं।

प्रजाति होती है और ऐसे लग रहा है की घायल हो गई है जिसे इसे --

इस दुकान में किसी ने सामान लेकर इस फोन स्केनर है जिसमे आज के टाइम पे हम लोग --

यहाँ पर बहोत ही छोटी-छोटी टाईप की मुर्तिया राखी गई है और पीछे यहाँ पर बौद्ध मूर्ति की --

अपने आप को मजबूत अर्थात ताकतवर भी बना सकते हैं ये चीजे हमारे लिए बोहत ही ज्यादा उपयोगी भी होती है।

यह एक समुद्र है जिसमे पानी है लेकिन हमे यह दिखाई दे रहा है की यह तो अलग-अलग प्रकार की पानी है उस साइड हमे कुछ और दिख रहा है।

यह खेत जोतने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी भी होता है और यह इसी के द्वारा हम --